जिसमें बहुत सारे हरे-भरे पेर हैं।

इसमें कुछ पानी के बूंदे भी हैं।

उसमें लगी एक गेट है जो कि हरे रंग की है।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

जिसे एक आदमी धो रहा है।

गाड़ी के दो पहिए जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक गार्डन का फोटो दिखाया जा रहा है जिसमें एक लड़का खड़ा है।

और झूले के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है।

और झूला एक जमीन पे लगा हुआ है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक जॉइन बुक क्लब का दुकान का फोटो दिख रहा है।

और यहाँ पे एक आदमी फोन पे बात भी कर रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा मैदान दिख रहा है।

जिसके बगल में एक स्कूल भी है।

जिसमें कुछ टेबल लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक लिफ्ट दिख रहा है।

और वहाँ पे एक आदमी खड़ा होके फोन पे किसी से बात करते हुए दिख रहा है।

शॉप दिख रहा है जिसके बाहर कुछ पैर भी हैं।

इसमें जमीन पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं इसके बगल में एक बड़ा-सा पेड़ है और एक आदमी इसमें बैठा हुआ है।

और एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा फोन देख रहा है।

जो कि फूलों से सजी हुई है उसके नीचे एक लाल कलर का मार्बल लगा हुआ है।

कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं।

घर के पास ही एक बड़ा सा पेड़ भी है।

घर के बगल से एक कच्ची रास्ता भी गई हुई है।

उसी जगह पे साइड में एक साइकिल भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

ट्रेन दिख रहा हैजो कि इंडियन रेलवे है ।

और उसके ऊपर सूर्य है।

जिसमें बहुत सारे तरह-तरह के पुस्तक रखे हुए हैं।

जिस पे बहुत सारे बल्ब नजर आ रहे हैं।

हमें इस तस्वीर में एक गार्डन दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे हिरन हैं।

पेड़ पे कुछ कौवे बैठे हुए हैं।

अच्छा सा बल्ब लगा हुआ है जो कि बढ़ते हुए बहुत खूबसूरत दिख रहा है।

हमें इस तस्वीर में एक बड़ा सा पार्क दिखाया गया है।

वहीं दूसरी तरफ एक बेड भी है जिसका रंग सफेद है।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

जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है।

वहीं दूसरे तरफ सूरज भी निकला हुआ है।

जिसमें बहुत छोटे-छोटे घास हैं।

वहीं गार्डन के चारों तरफ से कुछ पेड़ भी हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।

हमें इस पिक्चर में एक गुरुद्वारा नजर आ रहा है।

जहाँ बहुत सारे बच्चे बैठ के कुछ ड्राइंग कर रहे हैं।

उसी में एक मैम है जो उन्हें देख रही है।

हमें इस पिक्चर में एक लड़ लहसुन दिखाया गया है जो कि देखने में बड़ा ही टेस्टी लगता है।

हमें इस पिक्चर में एक होटल दिखाया गया है।

और वह अब नाचने के लिए रेडी हो चुकी हैं।

हमें इस तस्वीर में एक हाईवे दिखाया गया है।

उसी के पास दो ट्रक और एक--

हमें एक तस्वीर में टैटो का शॉप दिखाई दे रहा है जिसमें कि एक आदमी बैठा हुआ है।

और वहीं दूसरा आदमी उसके हाथों पे टैटो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।